ऐसा दिखाई दे रहा है की--

ये पहाड़ के से बहुत खूबसूरत लग रहा है।

यहाँ एक डर दिखाई दे रहा है जिसमे काफी सुंदर सजावट की गई है जहां पर कोई।

यहाँ समुद्र दिखाई दे रहा हैं जिसमे दो बड़े जहाज दिखाई दे रहे है आसमान दिखाई दे रहा है।

यहाँ से गाड़ी के आसपास बाउन्ड्री दिख --

यहाँ पे चेयर है और यहाँ पे कुछ शॉप है जो दिख --

थोड़ा ग्रास दिखाई दे रहा नदी मे पानी दिख --

दिखाई दे रहा है कुछ लड़किया दिखाई दे रही है ग्रुप मे जो डांस करते हुए।

यहाँ पर एक गाड़ियां खड़ी हुई है नीचे यहाँ --

बहुत सजावट की गई है बस की यहाँ पे आगे।

ऐसे बना कर रखी गई है।

यहाँ एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसपर --

और कुछ समान रखा हुआ है यहाँ पर प्लास्टिक्स की --

यहाँ पे एक नदी का किनारा दिखाई दे रहा है जहां --

सी सीढ़ियाँ वागरा दिखाई दे रहे है।